मोगरा का फूल हो सकता है।

हरे भरे छोटे छोटे पेड़ हैं यह काफी खूबसूरत और मनमोहक दृश्य है।

बाहर एक होडिंग लगा हुआ है राज चावला जनरल स्टोर की यह--

यहां आया हुआ है जो म्यूजिक परफॉर्म करने वाला है।

कोई वेटिंग एरिया है जहां पे बहोत सारे--

यहां पे बहुत सारे लोगों की भीड़ जमा हुई है ऐसा प्रतीत हो रहा है।

इसे सजाने के लिए कुछ बलूंस का भी इस्तेमाल किया गया है।

जो ख़राब हो जाता है या किसी कारण बन्द--

यह एक बहोत ही सुंदर और बड़ा वाटर पार्क है।

फैक्ट्री या कारखाना लग रहा है जहां पे--

जहां पर कुछ परिवार भोजन करने के लिए--